ऊपर की तरफ आसमान दिखाई पड़ रहा है थोड़े से बादल दिखाई पड़ रहे हैं।

सारी आदमी और औरत की भीड़ लगी हुई बहुत सारे घर बने हुएं कुछ खंबे गड़े हुएं उपर की तरफ वायर हैं।

बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं नीचे की तरफ काफी सारी मिट्टी दिखाई पड़ रही है।

ये एक घर दिखाई पड़ रहा है जिसमें दो तीन विंडो दिखाई पड़ रहे हैं नीचे की तरफ एक झोपड़ी बनी हुई है।

एक गमला दिखाई पड़ रहा है कुछ शीशे के डोर दिखाई पड़ रहे हैं।

और यहां पे कुछ नाव ऐसी है जिसमें काफी सारा पानी भरा हुआ है कुछ काई जमी हुई है।

ये एक पार्क बना हुआ है जिसमें डिजाइन वाली घास कटी हुई लगी है छोटी छोटी घास भी लगी हुई है।